और कुछ फोटोज बने हुए है और एक अधा पूल दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है जिसमे कुछ तारे दिख्याई दे रहे है जो ब्लैक कलर के है।

इसमें कुछ लाइटे दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है।

इमेज में मुझे एक घर दिखाई दे रहा है जो बोहोत बड़ा है।

इस इमेज में मुझे एक तबेला दिखाई दे रहा है जो मिटटी कलर का है और वाइट कलर का है और रेड कलर का है।

और कुछ गाय दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है।

और ब्लैक कलर की है और कुछ बालू दिखाई दे रहे हैं जो क्रीम कलर के हैं।

इस इमेज में मुझे बोहोत बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे है जो वाइट कलर के है।

में बोहोत सारी बालकनी दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर की है।

और एक दिवार दिखाई दे रहा है जिसमे बोहोत सारे लोहे लगे हुए है जो ब्लैक कलर के है।

इसमें बोहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है जो बेठे हुए है।

और कुछ परदे दिखाई दे रहे है जो पिंक कलर के है।

इन कलर के है और रेड कलर है और येलो कलर के है।

इस इमेज में मुझे दो दुकाने दिखाई दे रही है जो हलके ब्लू कलर की है।

और भोत साड़ी मूर्ति दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है और येलो कलर की है।

और बोर्ड दिखाई दे रहे है जो ब्लैक कलर के है जिसमे वाइट कलर से कुछ बना हुआ है।

इस इमेज में मुझे एक बड़ा सा गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमे बहोत सारे छोटी छोटी घास दिखाई दे रही है जो ग्रीन कलर की है।

और एक बडा सा सुखा हुआ पेड़ दिखाई रहा है जो मिटटी कलर का है।

इस इमेज में मुझे एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है जो मिट्टी कलर का है।

और कुछ पत्थर दिखाई दे रहे है जो मिट्टी कलर के है और कुछ छोटे छोटे घास दिखाई दे रहे है जो ग्रीन कलर के है।

और बोहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है जो कुछ कर रहे है।

और एक बड़ा सा मशीन दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है और गिया कलर का है और ओरेंज कलर का है।

और बोहोत सारे घरे दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है और मिट--

लरकी है और बोहोत सारे बड़े बड़े पेड़ पोधे दिखाई दे रहे है जो ग्रीन कलर के है।

और बोहोत सारे पेड़ पोधे दिखाई दे रहे है जो ग्रीन कलर के है और एक पाइप दिखाई देरा है जो मिट्टी कलर का है।

इस इमेज में मुझे एक थार दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है जिसमे लाइट जल रहा है जो यल्लो कलर का है।

और कुछ लोग दिखाई दे रहे है जो फोटोशूट करवा रहे है।

और एक घर जेसा कुछ दिखाई दे रहा है जो सीमेंट कलर का है और मिट्टी कलर का है और एक पानी का बोटल रखा हुआ है जो वाइट कलर का है।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

और बोहोत सारे बादल दिखाई दे रहे है जो ब्लू कलर के है।

इस इमेज में मुझे कुछ जोपड़ी के दूकान दिखाई दे रहे है जो ब्लू कलर के है और ब्लैक कलर के है और ग्रीन कलर के है।

इस इमेज में मुझे एक पहाड़ दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है।

पेड़ पोधे दिखाई दे रहे है जो ग्रीन कलर है।

और एक गेट दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है जिसमे रेड कलर से कुछ लिखा हुआ है।

और कुछ सेटर दिखाई दे रहे है जो क्रीम कलर के है और मिट्टी कलर के है।

और एक आधा दूकान दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है और क्रीम कलर का है।

और एक पेड़ दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर का है और एक स्कूटी दिखाई दे रहा है।

और एक झंडा दिखाई दे रहा है जो ओरेंज कलर का है।

इस इमेज में मुझे एक बोहोत बड़ा मेरेज हॉल जेसा कुछ दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर का है और वाइट कलर का है और मिट्टी कलर का है।

और कुछ तरबूज दिखाई दे रहे है जो ग्रीन कलर के है।

और कुछ एप्पल दिखाई दे रहे है जो रेड कलर के है और हल्के यल्लो कलर के है।

और कुछ प्लास्टिक के पतिया दिखाई दे रही है जो ग्रीन कलर की है।

इस इमेज में मुझे कुछ गमले दिखाई दे रहे है जो मिट्टी कलर के है और ब्लू कलर के है।

और कुछ बड़े बड़े पेड़ पोधे दिखाई दे रहे है जो ग्रीन कलर के है।